जमीन दिख रही है और साथ ही सामने एक जंगल नज़र आ रहा है जिधर सूरज दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक कार दाना नज़र आ रहा है जहाँ पर एक लंबा ट्रक भी नज़र आ रहा है ट्रक के ऊपर सरये --

कुछ घर नज़र आ रहे है जो की बहोत दुरी पर है नदी में--

दिख रही है गाइड्स है गाइडें भी नज़र आ रही --

और उसके के नीचे एक वाच नज़र आ रही है कुछ लड़कीया है जो लिख रही है।

होने वाला है इसलिये सभी व्यक्ति यहाँ पर एकत्रित हुये है।

यहाँ हमे एक नर्सरी नज़र आ रही है जिसमे हमे बहोत प्रकार के फूल दिखाई दे रहे है।

मैदान नज़र आ रहा है यहाँ पर कुछ प्लेयर्स है जो अंदर हैकड़ी ले रहै है और एक --

व्यक्ति उनके बैग्स पे सेनेटाइज कर रहा है यहाँ पर गार्डन --

यहाँ हमे कुछ फूलों और मालाओं की दुकान दिखाई दे रही है बहोत सारी मालाएं दुकान के बाहर--

रंगोली बना रही है एक रंगोली फूलो से बहोत सुंदर बनी हुई है।

यहाँ हमे कुछ गाड़ियाँ दिख रही है और बहोत सारे पेड़ नज़र आ रहे है।